है ये है। पूरा साफ फ़ोटो नहीं दिख पा रेया है।

केक काफी सुन्दर बना हुआ है।

और फ़ोटू हैं। काफी तरह-तरह की --

काफ फ़ी रफ्तार होती है इसमें --

लगा है। इसका ही ए.टी.एम. --

काफी होशियारी से ध्यान में रखते हुए अपने काम को --